सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है यहाँ ऐसा लग रहा है नीचे दुकाने और ऊपर घर बन घर बन रहे है।

घर बनने का अ सामान--

ये एक स्टैन्ड पर एक गाड़ी रखी हुई दिखाई रही है और एक आदमी एक पाइप से इसे पर पेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है

ये पानी यहाँ आपका सारा पानी दिखाई दे रहा है ऊपर पुल बना हुआ है नीचे मिट्टी पड़ी हुई नजर आ रही--